मौसम भी अच्छा है और नदी की लहरे में एक अजीब सी रौनक है।

मेट भी बिछे हैं ब्लू और रेड कलर के और अंदर का वातावरण भी बहुत शांति माहौल का है।

आसमान बिल्कुल साफ है और सुबह या शाम का वक्त लग रहा है।

ये फोटो किसी ऑफिस का लग रहा है।

पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क किया है लाइन --

और कहीं कहीं फूलदान भी रखे गए हैं।

बोहोत सारे फूलों के पौधे लाइन से लगे हैं हुए हैं।

ग्राउंड में कुछ पेड़ पौधे और एक आधा बन रहा मकान भी बना दिख रहा है।

नदी के साथ साथ बनी यह रेलिंग भी अच्छी नजर दे रही है।

एक हरियाली सी भरे पार्क में है।

स्मारक के चारों ओर सफेद रंग की लोहे की ऊंची ग्रील लगी हुई है।

पीछे बॉटल एक दम अच्छे से सजाई गई है।

लाल रोशनी से चमक रहा है जैसे कोई महल हो सब लोग--

और कुछ लड़कियां अंदर जाते हुए नजर आ रही है।

ये फोटो एक सुंदर और मॉडर्न स्कूल या कॉलेज का बिल्डिंग दिख रहा है।

ये जगह शांत और साफ सुथरा और पूरा सीन मॉर्निंग वाइब जैसा लग रहा है।

गेट के दोनों तरफ लाइट जल रही हैं। ये जगह तो लगता है जैसे गली मोहल्ले के लोगों की यादों का हिस --

पत्र लिखने के लिए कभी पैसा भेजने के--

पास में एक बैग और कुछ सामान भी पड़ा है।

इसमें हिंदी और उर्दू दोनों जबान में नाम लिखा है।

ता हल्का भीगा हुआ लग रहा है।

यह एक सफेद रंग का शानदार इमारत लग रहा है जैसे कोई महल हो।

यहां पर लोग अपने बैगों को आराम से ले के--

बोर्ड पे वेलकम चू लखनऊ मेट्रो लेल कॉर्पोरे--

ये फोटो एक पेट्रोल पंप का है।

लोगों का आना जाना लगा हुआ है।

और लोग ट्रेडिशनल कपड़े में नजर भी आ रहे हैं।

और एक छोटा सा बच्चा है जो शेरवानी में नजर आ रहा है।

और साइड में ग्लास में--

बिल्कुल शांत और सुकून भरा माहौल लग--